यहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा है यह बे थ्री बे टू बे वन लिखा हुआ है और यहाँ पर लाल कलर का कुछ और भी वस्तु समान है जो काम का है शायद तक--

यहाँ पर बहुत सारा बंगला दिखाई दे रहा है जो बहुत सुंदर है सामने में भी एक और बंगला है और यहाँ पर एक कार खड़ा हुआ है।

थाली है जिसमें कुछ खाने का समान है मुझे उतना तो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या -क्या खाने का समान है लेकिन यह चटनी जैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है।

ऐसा लगता है कि यह दरबा है जहाँ पर लोग माथा टेकने के लिए आते है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पर चित्र भी --.

लगता है कि यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है न्यू बस स्टैन्ड न्यू बस स्टैन्ड लिखा हुआ है ऊपर नीचे दोनों में और यहाँ पर एक बाइक भी खड़ा है तो हो सकता है कि यह एक--

लगता है कि यह लोग डांस कर रहे है क्योंकि डांस के पोजीशन में है बहुत सुंदर ही नृत्य कर रहे है हमारे भारत का झण्डा भी लहरा रहे है अगल-बगल में--

लगता है की कुछ खेला जाता है वह प्लेयर लेटा हुआ है और अपने पैरों को चेकप करा रहा है और मोबाईल में वह बात भी कर रहा है और एक--

बहुत सुंदर नज़ारा है। .

यह एक नदी या तलाव है जहाँ पर-- .